आफिस के ब बोर्ड का नाम लिखा हुआ है ए.सी दिख रही है और हमे लाईट भी दिखाई दे रहा है।

पत्‍ता गोभी दिखाई दे रही है जोकि मेरी बहोत-बहोत फेवरेट है। हमें एक लड़की भी दिखाई दे रही है जिसने नीली कुर्ती पहनी हैं।

और हमे गा ऑफिस के सामने बहोत सारी गाड़ियां दिख रही हैं। गाड़ियां पूरी तरह से नही दिख रही हैं। आधी-आधी दिख रही हैं। कुछ लोग --

और यहाँ पे हमें गाडि़याँ दिख रही हैं और एक लोहे का शेड दिख रहा है।

यह हमें छोटे छोटे टेन हाऊस दिख रहे। टैन हाऊस याने --

आधी उम्र का है। उसके हाथ में कुछ कागजात है और उसके जो काला पेंट पहना है उसके ऊपर भी उसने कुछ --

यहाँ हमे दो मंजिल की बिल्डिग दिख रही है।

यह यहाँ हमे यहाँ हमे तीन चार दुकाने दिख रही है जोकि ऊपर नीचे है कुछ दुकाने बंद है।

यहाँ हमें एक कॉलेज का अ ब फोटो दिख रहा हैं।

और काफी अच्‍छे दिख रहे हैं। हमें कांँच दिखाई दे रहे हैं। काँच काफी सुन्‍दर हैं। ऊपर हमें सामान रखने की जगह भी दिखाई दे रही है।

और हमें एक अलग सा छोटा सफेद और हरे कलर का गुलाबी कलर का भी मंडप दिख रहा है।

या यहाँ हमे एक हो अस्‍पताल दिख रहा है।

और उसकी साईकिल में कुछ कपड़े लगे हुए हैं।

बनियान पहनी है। हमें दीवाल पर पत्तियाकार का ड ड डिजाईन बनी हुई दिख रही हैं।